आरी पे कुछ बिजली लाइन भी गई हुई है जोकि बिजली खंबे गड़े हुए--

और काफी खूबसूरत पानी नजर आ रहा है।

बीच में तिरंगा बना हुआ है और कांच पे काफी सारे स्टीकर लगे हु--

और कांच के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा बाहरी को काफी सारे गमले लगे हुए हैं जिनमें पौधे हैं।

और काफी मात्रा में कुर्सियां पड़ी हुई हैं जिनपे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यह एक पेट्रोल पंप है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ सवारी ऑटो भी खड़ा हुआ है।

स्टोर है जिस पे ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं काफी सारे।

और एक शटर खुली है और साइड में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं।

और साइड में ही एक कैंपर रखा हुआ जिसके ऊपर एक ग्लास रखा हुआ--

यह एक काफी बड़ा हॉल है और इसमें आप देख सकते हैं काफी सारी मात्रा में खिड़कियाँ--

और एक घड़ी भी लगी हुई है दीवाल पे काफी सारी अलमारियां भी रखी हुई है।

और कुछ कुर्सी टेबल वगैरह भी रखे हुए हैं।

और सामने ही देपाल पे एक घड़ी टंगी हुई है और एक टी_ वी_ भी लगी हुई है।

आप देख सकते हैं एक स्टूल पर बैठ के एक कैबिन में लड़का देख रहा है।

और अंदर ही एक सामने बड़ा सा मंदिर रखा हुआ है।

यह एक काफी बड़ा मकान है जिसका आप कलर देख सकते हो काफी सुंदर तरीके से--

और नीचे कुछ चद्दर सेट बना हुआ है इसमें लोहे की जालियों से--

एक लड़का पिक्चर क्लिक करवा रहा है और नीचे ही हेलमेट रखा हुआ पीछे उसका।

यह एक बड़ा सा मकान है जिसमें आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत मकान है।

जो कि अपने-अपने में सब लोग मगन हैं और कुछ बच्चों के लिए खेलने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं जोकि बच्चे मस्ती कर रहे हुए हैं।

और एक मंदिर भी रखा हुआ काफी खूबसूरत।

और काफी मात्रा में लोग बाग घूम रहे हैं।

ये एक बड़ा सा हॉल है उसमें आप देख सकते हैं काफी सारी मात्रा में भीड़ है।

और साइड में ही काफी सारे खेत नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं।

गाड़ियों के और आप देख सकते हैं ऊपर गाड़ियों के काफ़ी सुंदर-सुंदर पोस्टर भी लगे हुए हैं।

ये एक काफी बड़ा हॉल है और इसमे आप देख सकते काफी सारी--

कुर्सी टेबल लगी हुई है और सामने ही एक--

और एक जेंट्स खड़ा हुआ है और एक जेंट्स बैठा हुआ है और सामने ही एक कुर्सी रखी हुई है जोकि--

और गाड़ियाँ और कुछ लोग भी घूम रहे हैं।

इससे आप देख सकते हैं कबड बाय कबड का काफी सारी मोटी पतली सब प्रकार की--

और आगे एक बड़ा सा चूड़ा टंगा हुआ कुछ सिक्के कंगन वगैरा।

बिंदी पत्ता बोरो प्लेस शैंपू वगैरह भी टंगे हुए हैं काफी सारे।

जोकि आप देख सकते हैं बेडरूम का गेट खुला हुआ है जो कि बेड पर कुछ कंबल वगैरह टंगे हुए--

उसमें काफी सुंदर गमले रखे हुए जिनमें पौधा लगे हुए हैं।

आप देख सकते हैं यह एक वाटर पार्क है।

बड़ा सा रिंग रिंग प्रकार के अलग-अलग कलर के रिंग बने हुए हैं।

जिनमें बच्चों को खेलने के लिए और बीच में एक--

मिट्टी भी लगी हुई है जो कि साफ नहीं किए गए आलू--

और आप देख सकते हैं अंदर कांच कि गेट लगे हुए--

और कुछ कुर्सी टेबल लगी हुई है जिन पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

पेड़-पौधे लगाए गए हैं और साइडों में मकान भी नजर आ रहे हैं।

यह एक काफी बड़ा मकान है दो-तीन मंजिला।

और नीचे काफी खूबसूरत पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

और मकान के बाहर काफी बड़ा ग्राउंड है और बाउंड्री है।

और गेट खुले हुए हैं वहीं पे कुछ कार वगैरह खड़ी हुई हैं।

अपना आवश्यकताओं को पूरा करें।

केनरा बैंक का बोर्ड लगा हुआ है काफी बड़ा।

और ग्राउंड में काफी अच्छी हरियाली है और पीछे भी काफी सारे बड़े-बड़े हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।